दीया पर से दो तीन लोग चलकर आ रहे हैं।

यहां पर एक छोटी सी होटेल है।

यहां पर गुलाब के फूल हैं और---